कमरे में एक पिलर पे स्थित एक कैफेटेरिया टाइप का दिख रहा है।

लेफ्ट साइड से एक रास्ता जाता हुआ दिख रहा है।

आगे एक पेड़ भी दिख रहा है जो कि झड़ चुका है।

में बहोत तेज पानी आ रहा है।

आस पास बहुत सारे ऑटोस खड़े हैं।

कुछ समान भी गिरा हुआ दिख रहा--

ये फोटो में एक दुकान दिख रहा है।

सामने में एक वाइट कलर के बोलेरो दिख रही है।

ये फोटो में कोई कैफ़े या रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है।

और कहीं कहीं तो कुछ गद्दे भी दिख रहे हैं।

बस के ऊपर में समीर ट्रैवल्स लिखा हुआ है।

बहोत सारे व्हाइट कलर की चेयर्स और टेबल लगे हुए हैं।

ये काफी सुन्दर लाइटिंग हुई है।

रैक्स में अलग अलग सामान जैसे शैंपू तेल वगैरा दिख रहे हैं।

राइट साइड में रेलिंग भी लगी हुई है स्टील की।

सामने एक न्यूज पेपर रखा है।

सामने एक घर दिख रहा है घर के उपर की छत टीन की है।

इस फोटो में आसमान का बहुत सुंदर दृश्य दिख रहा है एकदम नीले रंग का आसमान उसके ऊपर का सफेद सफेद बादल दिख रहे हैं।

इधर भी दो रेलवे ट्रैक लेफ्ट साइड में दिख रहे हैं और इंसानों को जाने के लिए एक फुटपाथ भी दिख रहा है।

फोटो में सामने में एक बहुत बड़ा सा ओपेन दिख रहा है।

फील्ड में घास जमी हुई है।

सामने में दो आदमी खड़े हैं।

ये फोटो किसी रेस्टोरेंट का दिखाई पड़ता है।

चेस स्काई ब्लू कलर की है और टेबल ब्लैक कलर का है।